और बहोत ही अच्छे तरीके से इसकी सेफ्टी के लिए यहां पर इस को रखा हुआ है।

ये एक शादी का पैलेस है जिसमें बहोत सारे लोग आए हुए हैं और बहोत ही सुंदर तरीके से--

और नीचे भी एक पौधा सुंदर सा लगा हुआ है सामने एक आदमी खड़ा है।

और यहां पे बहुत सारे लोग आए हुए--

जहां पे खुली जगह पे इसको रखा गया है मैरून कलर का ये ट्रैक्टर है और ऊपर बड़े-बड़े वृक्ष लगे हुए हैं लोहे का और भी ज्यादा सामान यहां पे --

बहुत ही अच्छा मौसम यहां पे लग रहा है।

ये बहोत सुंदर और बड़ा घर है जिसमें बहोत ही सुंदर तरीके से --